वहां पे दो-दो दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर उनकी चोंच-- .

और इसमें ये सो के एक्सरसाइज करने नीला टी शर्ट सफेद पैंट जूता पहन कर एक लोग काले रंग का कपड़े पहन कर जूता पहन के हैं।

ए गमछा लेकर इधर गुब्बारे लगे हैं हरे रंग के नीले रंग के आसमानी रंग के सफेद रंग के काले रंग का गेट है सफेद दीवाल है दीवार में हरे रंग से डिजाइन बना हुआ हैउधर--

यहां पर बाहर कई सारे बाइक खड़े हुए हैं कुछ लोग बातें भी कर रहे कई बाइक भी है एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहा पे केनरा बैंक का ये बोर्ड लगाया हुआ है।

और इधर तीर बना हुआ दिख रहा है और इधर भी कुछ बोर्ड दिख रहा है ऐसा कोचिंग क्लास कोचिंग टाइप का लग रहा है।

कागज पे दाम लिखा हुआ और नाम लिखा हुआ भी है कि कौन-कौन सी मिठाई कितने-कितने दाम की हैं।

लाइन के पावर के वो खंभे टाइप के के लगे हुए हैं।

और इधर बोर्ड लगा हुआ है उस पे हरे रंग से लिखा हुआ है सफेद।

पहिले कांच के चारों तरफ घेरे हुए कांच से पैक है। सफेद दीवार है।

नीचे मार्बल भी लगा हुआ है और बल्ब भी जल रहा है .

कांच की खिड़की दिखाई दे रही है स्टार्ट्स ऊपर लिखा हुआ इधर हरे रंग का पर्दा दिख रहा है सोफा लगा हुआ भी दिख रहा--

और पीछे हल्का हल्का बादल जैसे लाल टाइप का किरन कीन किरण डूब रहा हो सूरज डूब रहा।

और एक बीच में सफेद और पीछे दो लोग खड़ी इधर लोहे का रेलिंग बना हुआ है सीढ़ी या कुछ घास भी दिखाई दे रही है।

भी कुछ दिखाई दे रहा हैं उधर कुछ लोग काउंटर पर खड़े होकर सामान--

कुछ बिजली के तार भी इधर-उध रसे गए हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर ये पार्क हैआगे सामने उसमें कुछ लोग खेल रहे हैंकुछ लड़केहकुछ लड़कियाँ हैं।

यह एक कमरा है कमरे में कुछ सामान रखी गुलाबी रंग की हैं इधर दीवाल पे कुछ--

सांप का तस्वीर ऊपर पंखा है। ऊपर खाने का चीज दिख रहा है। थाली में भी कुछ खाने का सामान रखे अंदर गिलास है।

रखने वाले बने हुए हैं सारे उधर हार्पिक है फिनायल है लाइजोल है इधर बिस्किट्स के पैकेट्स है कुछ घी के पैकेट्स मसाले के पैकेट्स --

यहाँ पर दो लोग बाहर बैठे हुए हैं लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ हैऔर भी बहुत चीजें दीवाल पर--

और एक लोग इधर खड़े भी हैं और जमीन पर वो लोग एक लोग चप्पल पहने एक लोग बिना चप्पल के हैं।